ये एक चर्च के अंदर की फोटो है जिसमें हमे चार पाँच लोग नजर आ रहे हैं जिसमें चार लोग बैठे हैं एक मैडम है जो खड़ी हुई है।

पीछे हमे काफी सुंदर-सुंदर तस्वीरें नजर आ रही है ऊपर लाइट लगी हुई है और पास मे एक विंडो है मैडम के हाथ मे माइक है।

बम्बू लगे हुए है और और जो पिलर लगे हुए है एक बंदा लेटा हुआ है जिनके पैर मे मसाज एक बंदा कर रहा है पास मे बैग है बोतल पड़े हुए है कच्चा मैदान है।

ये एक मैदान है काफी बड़ा मैदान है इसमें पांडाल लगा हुआ है शायद योगा सिखाया जा रहा है।

पास मे बहुत सारे पेड़ है घने है काफी ऊपर आसमान नीला-नीला दिखाई दे रहा है नीचे पानी है जिसमें नाव चल रही है और इन लोगों ने कास्टूम भी पहन रखा है स्विमिंग कास्टूम ।

ये भी एक थेरेपी सेंटर है घर बना हुआ है जिसकी दिवारे हरी हो रही है पर्दा है मरून कलर में।

इसमें हमें एक बस नजर आ रही है जो काले कलर की है इसमें एक एक बंदा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है एक बस के पास से गुजरता हुआ नजर आ रहा है सड़क है पक्की पीछे पेड़ पौधे काफी सारे ऊपर सफेद आसमान नजर आ रहा है।

होल्डिंग लगे हुए है एस.बी.आई के जो नीले कलर का है बाहर बाइक है स्कूटी है दो तीन लोग नजर आ रहे हैं इसमें हमें।

नीचे बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी है सामने मे दो टीचर नजर आ रहे हैं जो इनको परेड करा रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय गान हो रहा है नीचे कच्चा मैदान है।

ये एक मेेरीज होम है जिसमें हमें फाउन्टेन नजर आ रहा है पानी वाला पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है साइड मे दो तीन लोग खड़े नजर आ रहे काफी लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ पे हमे बहुत सारे फूल नजर आ रहे हैं पीछे साइड को बहुत सारे समान भी रखे हुए हैं अलमारी मे फिट कीये हुए ऊपर टीन पड़ी हुई हैं पिलर लगी हुई है काफी लोगों की भीड़ हैं जो फूल खरीद भी रहे हैं।

दो तीन बाइक खड़ी हुई है एक बाइक के पास एक बंदा खड़ा हुआ है सामने जो खुला हुआ शटर है उसमे दो तीन लोग बैठे हुए नजर आ रहे है पास में बहुत बड़ा मैदान--